फील्ड बना हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग--

पहने हुए है जिसमें एक रोड है।

इस चित्र में हमें ये दिखाई दे रही है कि--